इस फोटो में एक आदमी सूट और टाइ पहने हुए है।

दुकान पूरी तरह से सामान से भरी हुई है।

आगे लोग पूजा में भाग ले रहे हैं।

बाहर कुछ लोग खड़े है जो अपने बारी का इंतजार कर रहे है।

इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो अस्पताल अरुणाचल प्रदेश के जीरो क्षेत्र में स्थित है।

चल रहा है और एक बैठा हुआ है और मौसम बहोत साफ है पीछे जंगल भी है और कुछ बादल दिख रहे हैं।

ये तस्वीर एक गुफा के प्रवेश द्वार की लगती है।

उपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

ये जगह बाइकर्स के लिए काफी आकर्षक लगती है।

घुमने का एक जगह है और पूरा कंपाउंड फेंसिंग से घेरा हुआ है और एंट्रेंस के लिए एक गेट है।